ऊपर भी बहुत ऊंचे है और ऊपर में भी कुछ पेड़ वेड है और वो अभी भी धुप है यहाँ पे और उसके बगल से कोई तार गए है जो लाईन के होंगे वो और नीचे कुछ लोग बेठ के कुछ काम कर--

--और पुरा खाली भी है और एक मकान भी है लगता है नैया के तरह है और ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ है लाल भी है और वहाँ इंडिया का झण्डा भी--